पार्क में पेड़ पोधे लगाए गयी है हरी-हरी हरियाली है कितना अच्छा लग रहा है।

दो बाइक सब लगाई है एकदम मस्त लग रहा है रिक्शा बहुत अच्छा लग रहा है बहुत मस्त लग रहा है रिक्शा ।

सामने वाइट कलर का मकान भी दिखाई दे रहा है ।

मन्दिर के बगल में केले का पेड़ भी है कितना अच्छा लग रहा है। .

कितना मस्त नीला पानी दिखाई दे रहा है कितना मस्त लग रहा है हरी-भरी हरियाली है अगल बगल --